दुकान दिखाई दे रहा है कुर्सी भी दिखाई दे रहा है ।

बड़ा-सा मकान भी दिखाई दे रहा है | हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहा है। दू गो उज्जर कलर का गाड़ी भी लगा हुआ है दिखाई दे रहा हे। फिर इधर --

हरा-हरा पेड़ है वो भी अब देखने में भी अच्छा लग रहा है।

आदमी भी इसमें दिखाई दे रहा है बेठा हुआ है ऐसे कुर्सी भी है जो शर्ट भी पेहेना हुआ है।

बगल में तार-उर है वो भी देखाई दे रहा है।

इ सब सामान लगा हुआ है लाईट --

शीशा का खिड़की है वो भी बोहोत अच्छा लग रहा है वो भी देख --

ए.सी. वेसी लगा है वो भी दिखाई दे रहा है ।

पोथियाँ कतला रोहू सब दिखाई दे रहा है ।

बैंगनी रंग है कथ्थक है गुलाबी है उजला है।

दिखाई दे रहा है। एक भी दिखाई दे रहा है वो भी --

उधर पेड़-पौधा भी है। ब्लू कलर है | पेड़ --

मुँह पर भी कुछ लिखा हुआ है वो भी दिखने में अच्छा लग रहा है ।

वो भी दिखाई दे रहा है ।

बहुत सारा खिड़की है देखने में भी अच्छा --

बस्ता लिए हुआ है वो भी अच्छ--

नीचे केरेट बिछाया हुआ है हरा लाल --

स्कूटर है मोटर साइकिल है बहुत सा गाड़ी लगा हुआ है उ दिखने में अच्छा लग रहा --